हमे सामने एक बोर्ड दिख रहा है जिसमे प्रबंदन शास्त्र शन संस्थान लिखा हुआ है जोकि देखने से लग रहा है।

यह स्टेट बैंक वाराणसी की नगर शाखा का है।

हमारे सामने एक सफ़ेद मार्बल का बना हुआ बहोत ही प्यारा --